इसलिए इस पार्क में बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं घूमने टहलने योगा आश्चन करने ।

ताकि इन्हे कोंई दिक्कत ना हो।

इसमें सब चीज की सुविधा रहती है इसलिए ये लोग --

यह बाल काटने का दुकान है।

और मॉल में हर एक सुविधा उपलब्ध रहती है।

इसलिए यहां पे बहोत ज्यादा भीड़ होती है।

यहां बस मिलने की हर एक सुविधा मिलती है ।

इस लोग आते हैं यहां और बस पकड़ के जाते हैं।

पैसार जमा करते हैं निकालते हैं।

यहां एडमिट करने से लेकर के ऑपरेशन करने हर एक सुविधा इसमें रहती है।

अन्य चीज बहोत ज्यादा मिलती है देखने के लिए।

इसलिए इसमें बहुत दूर-दूर के बच्चे एडमिशन करवाए है।

ताकि देखने में सुंदर लग सके इसलिए --